जिसपे आदमी बैठा हुआ है। जिम में एक आदमी है जिसने स्काई ब्लू की टी-शर्ट पहनी है। टूयूबलाइट है।

मंदिर है। मंदिर के पास जो है स्तंभ बना हुआ है ऊपर।

पेड़ है दुकान पे पैंपलेट लगा हुआ है जिसपे रेड कलर से --

रेड कलर के फूल से सजावट है।

सलून का ब्लू कलर का लड़का छपा हुआ है सामने।

लाइट लगी हुई है। डिजाइन बना हुआ है।

लोहे का गेट है ब्लैक कलर का।

बुक्स का स्टोल है जिसपे तेजा बुक स्टूल लिखा हुआ है ब्लू कलर का पेंट है साइड में।

नीचे ए.टी.एम है। ए.टी.एम के अंदर आदमी है। ऐसी लगा हुआ है। पम्पलेट छपा हुआ है।